एंड मूर्ति रखी है मूर्ति लोहे की है।

सर पर टोपी लगायी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

रंग के कपड़े पहने हुए दिख रहा है दीवारों पर के रंग लगा हुआ दिख रहा है। ए अ --

इस चित्र के अंदर एक टेबल पर काले रंग --

इस स्टेचू के अन्दर --

इस स्टचू के अन्दर सफ़ेद रंग की बड़ी साड़ी ही बस दिख रही है जिसमें बोहोत सारे आदमी --

दिख रही है ये जिस पर --

ये आधे पानी का रंग काला दिख रहा है।

बिजली के तार दिख रहे हैं घास दिख रही हे ।